हो क्योंकि यहां पे अभी बलूंस भी वैसे ही--

फोटो है जहां पर बहोत सारा खान एक साथ बनाया जा रहा है।